पीछे एक फूलों से बनी हुई एक बग्गी जा रही है जिसमे ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है आगे कुछ लोग खड़े हुए है जो कि पूतली पिपली बजा रहे है।

सामने से एक सनराईस आ रहा है और एक नाव है उसमे दो आदमी खड़े हुये है ब्लू कलर की अंदर से नाव है पानी है नीचे--

स्टॉप है जहां पर अ कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने लगेज लिए हुए सामने एक बस खड़े हुई है सामने से लाइटिंग हो रही है।

एक मार्केट है जो की फूल और आम के पत्ते अशोक के पत्तो की मार्केट है सामने भगवान् की मूर्तियाँ है पीछे एक ब्लू कलर की चेयर है इसमे आदमी बैठा हुआ है।

एक मच्छी की शिप है आ फिश सेन्टर है फिश सेटर है जो मछलिया व डाले हुए है एक निकली हुई है एक आदमी है।

--जो की एक कुर्सी पे बैठा हुआ है नीचे ब्लू कलर का फ्लोर है पन्नी बिछी हुई है जिस पर मछलिया डली हुई है आधी मछलिया कटी हुई है एक डिब्बा है बगल में एक --]

कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं एक मूर्ती हैं जो की फूलो से सारी सजाई गई है पीछे कुछ पेड़ है पीछे एक केबल है जो की तार की निकली हुई है साइड से एक रास्ता है उसमे निकले हुए है कुछ लोग फ़ोन पे फोटो खींच रहे है।